मेरे प्यारे देशवासियो नमस्कार
इन दिनों बहुत से स्थान पर अच्छी वर्षा की ख़बरें आ रही हैं
कहींकहीं पर अधिक वर्षा के कारण चिन्ता की भी ख़बर आ रही है और कुछ स्थानों पर अभी भी लोग वर्षा की प्रतीक्षा कर रहे हैं
भारत की विशालता विविधता कभीकभी वर्षा भी पसंदनापसंद का रूप दिखा देती है लेकिन हम वर्षा को क्या दोष दें मनुष्य ही है जिसने प्रकृति से संघर्ष का रास्ता चुन लिया और उसी का नतीज़ा है कि कभीकभी प्रकृति हम पर रूठ जाती है
और इसीलिये हम सबका दायित्व बनता है हम प्रकृति प्रेमी बनें हम प्रकृति के रक्षक बनें हम प्रकृति के संवर्धक बनें तो प्रकृतिदत्त जो चीज़े हैं उसमें संतुलन अपने आप बना रहता है
पिछले दिनों वैसे ही एक प्राकृतिक आपदा की घटना ने पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया मानवमन को झकझोर दिया
आप सब लोगों ने टीवी पर देखा होगा थाईलैंड में 12 किशोर फुटबॉल खिलाड़ियों की टीम और उनके कोच घूमने के लिए गुफ़ा में गए
वहाँ आमतौर पर गुफ़ा में जाने और उससे बाहर निकलने उन सबमें कुछ घंटों का समय लगता है
लेकिन उस दिन किस्मत को कुछ और ही मंज़ूर था
जब वे गुफ़ा के भीतर काफी अन्दर तक चले गए अचानक भारी बारिश के कारण गुफ़ा के द्वार के पास काफी पानी जम गया
उनके बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया
कोई रास्ता न मिलने के कारण वे गुफ़ा के अन्दर के एक छोटे से टीले पर रुके रहे और वो भी एकदो दिन नहीं 18 दिन तक
आप कल्पना कर सकते हैं किशोर अवस्था में सामने जब मौत दिखती हो और पलपल गुजारनी पड़ती हो तो वो पल कैसे होंगे एक तरफ वो संकट से जूझ रहे थे तो दूसरी तरफ पूरे विश्व में मानवता एकजुट होकर के ईश्वरदत्त मानवीय गुणों को प्रकट कर रही थी
दुनिया भर में लोग इन बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए प्रार्थनाएँ कर रहे थे
यह पता लगाने का हरसंभव प्रयास किया गया कि बच्चे हैं कहाँ किस हालत में हैं
उन्हें कैसे बाहर निकाला जा सकता है
अगर बचाव कार्य समय पर नहीं हुआ तो मानसून के सीजन में उन्हें कुछ महीनों तक निकालना संभव नहीं होता
खैर जब अच्छी ख़बर आयी तो दुनिया भर को शान्ति हुई संतोष हुआ लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को एक और नज़रिये से भी देखने का मेरा मन करता है कि पूरा आपरेशन कैसा चला
हर स्तर पर ज़िम्मेवारी का जो अहसास हुआ वो अद्भुत था
सभी ने चाहे सरकार हो इन बच्चों के मातापिता हों उनके परिवारजन हों मीडिया हो देश के नागरिक हों हर किसी ने शान्ति और धैर्य का अदभुत आचरण करके दिखाया
सबकेसब लोग एक टीम बनकर अपने मिशन में जुटे हुए थे
हर किसी का संयमित व्यवहार मैं समझता हूँ एक सीखने जैसा विषय है समझने जैसा है
ऐसा नहीं कि माँबाप दुखी नहीं हुए होंगे ऐसा नहीं कि माँ के आँख से आँसूं नहीं निकलते होंगे लेकिन धैर्य संयम पूरे समाज का शान्तचित्त व्यवहार ये अपने आप में हम सबके लिए सीखने जैसा है
इस पूरे आपरेशन में थाईलैंड की नौसेना के एक जवान को अपनी जान भी गँवानी पड़ी
पूरा विश्व इस बात पर आश्चर्यचकित है कि इतनी कठिन परिस्थितियों के बावज़ूद पानी से भरी एक अंधेरी गुफ़ा में इतनी बहादुरी और धैर्य के साथ उन्होंने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी
यह दिखाता है कि जब मानवता एक साथ आती है अदभुत चीज़ें होती हैं
बस ज़रूरत होती है हम शांत और स्थिर मन से अपने लक्ष्य पर ध्यान दें उसके लिए काम करते रहें
पिछले दिनों हमारे देश के प्रिय कवि नीरज जी हमें छोड़कर के चले गए
नीरज जी की एक विशेषता रही थी आशा भरोसा दृढसंकल्प स्वयं पर विश्वास
हम हिन्दुस्तानियों को भी नीरज जी की हर बात बहुत ताक़त दे सकती है प्रेरणा दे सकती है उन्होंने लिखा था
अँधियार ढलकर ही रहेगा
आँधियाँ चाहे उठाओ
बिजलियाँ चाहे गिराओ
जल गया है दीप तो अँधियार ढलकर ही रहेगा
नीरज जी को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूँ
नमस्ते प्रधानमंत्री जी मेरा नाम सत्यम है
मैंने इस साल देल्ही यूनिवर्सिटी में 1st यियर में एडमिशन लिया है
हमारे स्कूल के बोर्ड एक्साम्स के समय आपने हमसे एक्साम्स स्ट्रेस और एड्यूकेशन की बात की थी
मेरे जैसे स्टूडेंट्स के लिए अब आपका क्या सन्देश है
वैसे तो जुलाई और अगस्त के महीने किसानों के लिए और सभी नौजवानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं
क्योंकि यही वक़्त होता है जब कॉलेजेस का पीक सीजन होता है
सत्यम जैसे लाखों युवा स्कूल से निकल करके कॉलेजेस में जाते हैं
अगर फरवरी और मार्च एक्साम्स पेपर्स एंसवर्स में जाता है तो अप्रैल और मई छुट्टियों में मौज़मस्ती करने के साथसाथ रिजल्ट्स जीवन में आगे की दिशाएँ तय करने कैरियर चोइस इसी में खप जाता है
जुलाई वह महीना है जब युवा अपने जीवन के उस नये चरण में क़दम रखते हैं जब फोकस क्वेशंस से हटकर के कटॉफ पर चला जाता है
छात्रों का ध्यान होम से होस्टेल पर चला जाता है
छात्र पेरेंट्स की छाया से प्रोफेसर्स की छाया में आ जाते हैं
मुझे पूरा यकीन है कि मेरा युवामित्र कॉलेज जीवन की शुरुआत को लेकर काफी उत्साही और खुश होंगे
पहली बार घर से बाहर जाना गाँव से बाहर जाना एक प्रोटेक्टिव एनवायर्नमेंट से बाहर निकल करके खुद को ही अपना सारथी बनना होता है
इतने सारे युवा पहली बार अपने घरों को छोड़कर अपने जीवन को एक नयी दिशा देने निकल आते हैं
कई छात्रों ने अभी तक अपनेअपने कॉलेज जोइन कर लिए होंगे कुछ जोइन करने वाले होंगे
आप लोगों से मैं यही कहूँगा बीई काल्म एंजॉय लाइफ जीवन में अन्तर्मन का भरपूर आनंद लें
किताबों के बिना कोई चारा तो नहीं है स्टडी तो करना पड़ता है लेकिन नयीनयी चीजें खोज़ने की प्रवृति बनी रहनी चाहिए
पुराने दोस्तों का अपना महामूल्य है
बचपन के दोस्त मूल्यवान होते हैं लेकिन नये दोस्त चुनना बनाना और बनाए रखना यह अपने आप में एक बहुत बड़ी समझदारी का काम होता है
कुछ नया सीखें जैसे नयीनयी स्किल्स नयीनयी भाषाएँ सीखें
जो युवा अपने घर छोड़कर बाहर किसी और जगह पर पढ़ने गए हैं उन जगहों को डिस्कवर करें वहाँ के बारे में जानें वहाँ के लोगों को भाषा को संस्कृति को जानें वहाँ के पर्यटन स्थल होंगे वहाँ जाएँ उनके बारे में जानें
नयी पारी प्रारम्भ कर रहे हैं सभी नौजवानों को मेरी शुभकामनाएं हैं
अभी जब कॉलेज सीजन की बात हो रही है तो मैं न्यूज में देख रहा था कि कैसे मध्यप्रदेश के एक अत्यंत ग़रीब परिवार से जुड़े एक छात्र आशाराम चौधरी ने जीवन की मुश्किल चुनौतियों को पार करते हुए सफ़लता हासिल की है
उन्होंने जोधपुर एम्स की एमबीबीएस की परीक्षा में अपने पहले ही प्रयास में सफ़लता पायी है
उनके पिता कूड़ा बीनकर अपने परिवार का पालनपोषण करते हैं
मैं उनकी इस सफ़लता के लिए उन्हें बधाई देता हूँ
ऐसे कितने ही छात्र हैं जो ग़रीब परिवार से हैं और विपरीत परिस्थियों के बावज़ूद अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो हम सबको प्रेरणा देता है
चाहे वो दिल्ली के प्रिंस कुमार हों जिनके पिता डीटीसी में बस चालक हैं या फिर कोलकाता के अभय गुप्ता जिन्होंने फुटपाथ पर स्ट्रीट लाइट्स के नीचे अपनी पढ़ाई की
अहमदाबाद की बिटिया आफरीन शेख़ हो जिनके पिता ऑटो रिक्शा चलाते हैं
नागपुर की बेटी खुशी हो जिनके पिता भी स्कूल बस में ड्राइवर हैं या हरियाणा के कार्तिक जिनके पिता चौकीदार हैं या झारखण्ड के रमेश साहू जिनके पिता ईंटभट्टा में मजदूरी करते हैं
ख़ुद रमेश भी मेले में खिलौना बेचा करते थे या फिर गुडगाँव की दिव्यांग बेटी अनुष्का पांडा जो जन्म से ही स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नामक एक आनुवांशिक बीमारी से पीड़ित है इन सबने अपने दृढसंकल्प और हौसले से हर बाधा को पार कर दुनिया देखे ऐसी कामयाबी हासिल की
हम अपने आसपास देखें तो हमको ऐसे कई उदाहरण मिल जाएँगे
देश के किसी भी कोने में कोई भी अच्छी घटना मेरे मन को ऊर्जा देती है प्रेरणा देती है और जब इन नौजवानों की कथा आपको कह रहा हूँ तो इसके साथ मुझे नीरज जी की भी वो बात याद आती है और ज़िंदगी का वही तो मक़सद होता है
नीरज जी ने कहा है
गीत आकाश को धरती का सुनाना है मुझे
हर अँधेरे को उजाले में बुलाना है मुझे
फूल की गंध से तलवार को सर करना है
और गागा के पहाड़ों को जगाना है मुझे
मेरे प्यारे देशवासियो कुछ दिन पहले मेरी नज़र एक न्यूज़ पर गई लिखा था दो युवाओं ने किया मोदी का सपना साकार
जब अन्दर पढ़ा तो जाना कि कैसे आज हमारे युवा टेक्नोलॉजी का स्मार्ट और क्रिएटिव उसे करके सामान्य व्यक्ति के जीवन में बदलाव का प्रयास करते हैं
घटना यह थी कि एक बार अमेरिका के सान जोसे शहर जिसे टेक्नोलॉजी हब के रूप में जाना जाता है
वहाँ मैं भारतीय युवाओं के साथ चर्चा कर रहा था
मैंने उनसे अपील की थी
वो भारत के लिए अपने टैलेंट को कैसे उसे कर सकते हैं ये सोचें और समय निकाल कर के कुछ करें
मैंने ब्रैंडरेन को ब्रेनगेन में बदलने की अपील की थी
रायबरेली के दो इत प्रोफेशनल्स योगेश साहू जी और रजनीश बाजपेयी जी ने मेरी इस चुनौती को स्वीकार करते हुए एक अभिनव प्रयास किया
अपने प्रोफेशनल स्किल्स का उपयोग करते हुए योगेश जी और रजनीश जी ने मिलकर एक स्मार्टगांव App तैयार किया है
ये App न केवल गाँव के लोगों को पूरी दुनिया से जोड़ रहा है बल्कि अब वे कोई भी जानकारी और सूचना स्वयं खुद के मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकते हैं
रायबरेली के इस गाँव तौधकपुर के निवासियों ग्रामप्रधान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सीडीओ सभी लोगों ने इस App के उपयोग के लिए लोगों को जागरूक किया
यह App गाँव में एक तरह से डिजिटल क्रांति लाने का काम कर रहा है
गाँव में जो विकास के काम होते हैं उसे इस App के ज़रिये रेकॉर्ड करना ट्रैक करना मॉनिटर करना आसान हो गया है
इस App में गाँव की फोन डायरेक्ट्री न्यूज सेक्शन इवेंट्स लिस्ट हेल्थ सेंटर और इन्फॉर्मेशन सेंटर मौजूद है
यह App किसानों के लिए भी काफी फायदेमंद है App का ग्रामर फीचर किसानों के बीच फैक्ट रते एक तरह से उनके उत्पाद के लिए एक मार्केट प्लेस की तरह काम करता है
इस घटना को यदि आप बारीकी से देखेंगे तो एक बात ध्यान में आएगी वह युवा अमेरिका में वहाँ के रहनसहन सोचविचार उसके बीच जीवन जी रहा है
कई सालों पहले भारत छोड़ा होगा लेकिन फिर भी अपने गाँव की बारीकियों को जानता है चुनौतियों को समझता है और गाँव से इमोशनली जुड़ा हुआ है
इस कारण वह शायद गाँव को जो चाहिए ठीक उसके अनुरूप कुछ बना पाया
अपने गाँव अपनी जड़ों से यह जुड़ाव और वतन के लिए कुछ कर दिखाने का भाव हर हिन्दुस्तानी के अन्दर स्वाभाविक रूप से होता है
लेकिन कभीकभी समय के कारण कभी दूरियों के कारण कभी पारिस्थितियों के कारण उस पर एक हल्की सी राख जम जाती है लेकिन अगर कोई एक छोटी सी चिंगारी भी उसका स्पर्श हो जाए तो सारी बातें फिर एक बार उभर करके आ जाती हैं और वो अपने बीते हुए दिनों की तरफ खींच के ले आती हैं
हम भी ज़रा जाँच कर लें कहीं हमारे केस में भी तो ऐसा नहीं हुआ है स्थितियाँ परिस्थिति दूरियों ने कहीं हमें अलग तो नहीं कर दिया है कहीं राख तो नहीं जम गई है
जरुर सोचिये
आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार मैं संतोष काकड़े कोल्हापुर महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ
पंढरपुर की वारी ये महाराष्ट्र की पुरानी परंपरा है
हर साल ये बड़े उत्साह और उमंग से मनाया जाता है
लगभग 78 लाख वारकरी इसमें शामिल होते हैं
इस अनोखे उपक्रम के बारे में देश की बाकी जनता भी अवगत हो इसलिए आप वारी के बारे और जानकारी दीजिये
संतोष जी आपके फोन कॉल के लिए बहुतबहुत धन्यवाद
सचमुच में पंढरपुर वारी अपने आप में एक अद्भुत यात्रा है
साथियों आषाढ़ी एकादशी जो इस बार 23 जुलाई को थी उस दिन को पंढरपुर वारी की भव्य परिणिति के रूप में भी मनाया जाता है
पंढरपुर महाराष्ट्र के सोलापुर जिले का एक पवित्र शहर है
आषाढ़ी एकादशी के लगभग 1520 दिन पहले से ही वारकरी यानी तीर्थयात्री पालकियों के साथ पंढरपुर की यात्रा के लिए पैदल निकलते हैं
इस यात्रा जिसे वारी कहते हैं में लाखों की संख्या में वारकरी शामिल होते हैं
संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम जैसे महान संतों की पादुका पालकी में रखकर विट्ठलविट्ठल गाते नाचते बजाते पैदल पंढरपुर की ओर चल पड़ते हैं
यह वारी शिक्षा संस्कार और श्रद्धा की त्रिवेणी है
तीर्थ यात्री भगवान विट्ठल जिन्हें विठोवा या पांडुरंग भी कहा जाता है उनके दर्शन के लिए वहाँ पहुँचते हैं
भगवान विट्ठल ग़रीबों वंचितों पीड़ितों के हितों की रक्षा करते हैं
महाराष्ट्र कर्नाटक गोवा आन्ध्र प्रदेश तेलंगाना वहाँ के लोगों में अपार श्रद्धा है भक्ति है
पंढरपुर में विठोवा मंदिर जाना और वहाँ की महिमा सौन्दर्य आध्यात्मिक आनंद का अपना एक अलग ही अनुभव है
मन की बात के श्रोताओं से मेरा आग्रह है कि अवसर मिले तो एक बार ज़रूर पंढरपुर वारी का अनुभव लें
ज्ञानेश्वर नामदेव एकनाथ रामदास तुकाराम अनगिनत संत महाराष्ट्र में आज भी जनसामान्य को शिक्षित कर रहे हैं
अंधश्रद्धा के खिलाफ लड़ने की ताकत दे रहे हैं और हिंदुस्तान के हर कोने में यह संत परंपरा प्रेरणा देती रही है
चाहे वो उनके भारुड हो या अभंग हो हमें उनसे सदभाव प्रेम और भाईचारे का महत्वपूर्ण सन्देश मिलता है
अंधश्रद्धा के खिलाफ श्रद्धा के साथ समाज लड़ सके इसका मंत्र मिलता है
ये वो लोग थे जिन्होंने समयसमय पर समाज को रोका टोका और आईना भी दिखाया और यह सुनिश्चित किया कि पुरानी कुप्रथाएँ हमारे समाज से खत्म हों और लोगों में करुणा समानता और शुचिता के संस्कार आएं
हमारी यह भारतभूमि बहुरत्ना वसुंधरा है जैसे संतों की एक महान परंपरा हमारे देश में रही उसी तरह से सामर्थ्यवान माँभारती को समर्पित महापुरुषों ने इस धरती को अपना जीवन आहुत कर दिया समर्पित कर दिया
एक ऐसे ही महापुरुष हैं लोकमान्य तिलक जिन्होंने अनेक भारतीयों के मन में अपनी गहरी छाप छोड़ी है
हम 23 जुलाई को तिलक जी की जयंती और 01 अगस्त को उनकी पुण्यतिथि में उनका पुण्य स्मरण करते हैं
लोकमान्य तिलक साहस और आत्मविश्वास से भरे हुए थे
उनमें ब्रिटिश शासकों को उनकी गलतियों का आईना दिखाने की शक्ति और बुद्धिमत्ता थी
अंग्रेज़ लोकमान्य तिलक से इतना अधिक डरे हुए थे कि उन्होंने 20 वर्षों में उन पर तीन बार राजद्रोह लगाने की कोशिश की और यह कोई छोटी बात नहीं है
मैं लोकमान्य तिलक और अहमदाबाद में उनकी एक प्रतिमा के साथ जुड़ी हुई एक रोचक घटना आज देशवासियों के सामने रखना चाहता हूँ
अक्टूबर 1916 में लोकमान्य तिलक जी अहमदाबाद जब आए उस ज़माने में आज से क़रीब सौ साल पहले 40000 से अधिक लोगों ने उनका अहमदाबाद में स्वागत किया था और यहीं यात्रा के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनसे बातचीत करने का अवसर मिला था और सरदार वल्लभ भाई पटेल लोकमान्य तिलक जी से अत्यधिक प्रभावित थे और जब 01 अगस्त 1920 को लोकमान्य तिलक जी का देहांत हुआ तभी उन्होंने निर्णय कर लिया था कि वे अहमदाबाद में उनका स्मारक बनाएंगे
सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद नगर पालिका के मायोर चुने गए और तुरंत ही उन्होंने लोकमान्य तिलक के स्मारक के लिए विक्टोरिया गार्डेन को चुना और यह विक्टोरिया गार्डेन जो ब्रिटेन की महारानी के नाम पर था
स्वाभाविक रूप से ब्रिटिश इससे अप्रसन्न थे और कलेक्टर इसके लिए अनुमति देने से लगातार मना करता रहा लेकिन सरदार साहब सरदार साहब थे
वह अटल थे और उन्होंने कहा था कि भले ही उन्हें पद त्यागना पड़े लेकिन लोकमान्य तिलक जी की प्रतिमा बन कर रहेगी
अंततः प्रतिमा बन कर तैयार हुई और सरदार साहब ने किसी और से नहीं बल्कि 28 फरवरी 1929 इसका उद्घाटन महात्मा गाँधी से कराया और सब से बड़ी मज़े की बात है उस उद्घाटन समारोह में उस भाषण में पूज्य बापू ने कहा कि सरदार पटेल के आने के बाद अहमदाबाद नगर पालिका को न केवल एक व्यक्ति मिला है बल्कि उसे वह हिम्मत भी मिली है जिसके चलते तिलक जी की प्रतिमा का निर्माण संभव हो पाया है
और मेरे प्यारे देशवासियो इस प्रतिमा की विशिष्टता यह है कि यह तिलक की ऐसी दुर्लभ मूर्ति है जिसमें वह एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं इसमें तिलक के ठीक नीचे लिखा है स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और यह सब अंग्रेजों के इस कालखंड की बात तो सुना रहा हूँ
लोकमान्य तिलक जी के प्रयासों से ही सार्वजनिक गणेश उत्सव की परंपरा शुरू हुई
सार्वजनिक गणेश उत्सव परम्परागत श्रद्धा और उत्सव के साथसाथ समाजजागरण सामूहिकता लोगों में समरसता और समानता के भाव को आगे बढ़ाने का एक प्रभावी माध्यम बन गया था
वैसे समय वो एक कालखंड था जब जरुरत थी कि देश अंग्रेजों के खिलाफ़ लड़ाई के लिए एकजुट हो इन उत्सवों ने जाति और सम्प्रदाय की बाधाओं को तोड़ते हुए सभी को एकजुट करने का काम किया
समय के साथ इन आयोजनों की पॉपुलेरिटी बढ़ती गई
इसी से पता चलता है कि हमारी प्राचीन विरासत और इतिहास के हमारे वीर नायकों के प्रति आज भी हमारी युवापीढ़ी में क्रेज है
आज कई शहरों में तो ऐसा होता है कि आपको लगभग हर गली में गणेशपंडाल देखने को मिलता है
गली के सभी परिवार साथ मिलकर के उसे आर्गेनाइज करते हैं
एक टीम के रूप में काम करते हैं
यह हमारे युवाओं के लिए भी एक बेहतरीन अवसर है जहाँ वे लीडरशिप और आर्गेनाइजेशन जैसे गुण सीख सकते हैं उन्हें खुद के अन्दर विकसित कर सकते हैं
मेरे प्यारे देशवासियो
मैंने पिछली बार भी आग्रह किया था और जब लोकमान्य तिलक जी को याद कर रहा हूँ तब फिर से एक बार आपसे आग्रह करूँगा कि इस बार भी हम गणेश उत्सव मनाएँ धूमधाम से मनाएँ जीजान से मनाएँ लेकिन इकोफ्रेंडली गणेश उत्सव मनाने का आग्रह रखें
गणेश जी की मूर्ति से लेकर साजसज्जा का सामान सब कुछ इकोफ्रेंडली हो और मैं तो चाहूँगा हर शहर में ईसीओ फ्रेंडली गणेश उत्सव की अलग स्पर्धाएँ हों उनको इनाम दिए जाएँ और मैं तो चाहूँगा कि माइगोव पर भी और नरेंद्र मोदी App पर भी इकोफ्रेंडली गणेशउत्सव की चीज़े व्यापक प्रचार के लिए रखी जाएँ
मैं ज़रूर आपकी बात लोगों तक पहुँचाऊँगा
लोकमान्य तिलक ने देशवासियों में आत्मविश्वास जगाया उन्होंने नारा दिया था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम लेकर के रहेंगे
आज ये कहने का समय है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे
हर भारतीय की पहुँच सुशासन और विकास के अच्छे परिणामों तक होनी चाहिए
यही वो बात है जो एक नए भारत का निर्माण करेगी
तिलक के जन्म के 50 वर्षों बाद ठीक उसी दिन यानी 23 जुलाई को भारतमाँ के एक और सपूत का जन्म हुआ जिन्होंने अपना जीवन इसलिए बलिदान कर दिया ताकि देशवासी आज़ादी की हवा में साँस ले सके
मैं बात कर रहा हूँ चंद्रशेखर आज़ाद की
भारत में कौनसा ऐसा नौजवान होगा जो इन पंक्तियों को सुनकर के प्रेरित नही होगा
सरफ़रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है
देखना है ज़ोर कितना बाज़ुएकातिल में है
इन पंक्तियों ने अशफाक़ उल्लाह खान भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद जैसे अनेक नौज़वानों को प्रेरित किया
चंद्रशेखर आज़ाद की बहादुरी और स्वतंत्रता के लिए उनका जुनून इसने कई युवाओं को प्रेरित किया
आज़ाद ने अपने जीवन को दाँव पर लगा दिया लेकिन विदेशी शासन के सामने वे कभी नहीं झुके
ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे मध्यप्रदेश में चन्द्रशेखर आज़ाद के गाँव अलीराजपुर जाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ
इलाहाबाद के चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में भी श्रद्धासुमन अर्पित करने का अवसर मिला और चंद्रशेखर आज़ाद जी वो वीर पुरुष थे जो विदेशियों की गोली से मरना भी नहीं चाहते थे जियेंगे तो आज़ादी के लड़तेलड़ते और मरेंगे तो भी आज़ाद बने रहकर के मरेंगे यही तो विशेषता थी उनकी
एक बार फिर से भारत माता के दो महान सपूतों लोकमान्य तिलक जी और चंद्रशेखर आज़ाद जी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ
अभी कुछ ही दिन पहले फिनलैंड में चल रही जूनियर अंडर20 विश्व एथेलेटिक्स चैम्पियनशिप में 400 मीटर की दौड़ उस स्पर्धा में भारत की बहादुर बेटी और किसान पुत्री हिमा दास ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है
देश की एक और बेटी एकता भयान ने मेरे पत्र के जवाब में इंडोनेशिया से मुझे इमेल किया अभी वो वहाँ एशियन गेम्स की तैयारी कर रही हैं
इमेल में एकता लिखती हैं किसी भी एथलीट के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्षण वो होता है जब वो तिरंगा पकड़ता है और मुझे गर्व है कि मैंने वो कर दिखाया
एकता हम सब को भी आप पर गर्व है
आपने देश का नाम रोशन किया है
ट्यूनिसिया में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2018 में एकता ने गोल्ड और ब्रोंज मेडल जीते हैं
उनकी यह उपलब्धि विशेष इसलिए है कि उन्होंने अपनी चुनौती को ही अपनी कामयाबी का माध्यम बना दिया
बेटी एकता भयान 2003 में रोड एक्सीडेंट के कारण उसके शरीर का आधा हिस्सा नीचे का हिस्सा नाकाम हो गया लेकिन इस बेटी ने हिम्मत नही हारी और खुद को मजबूत बनाते हुए ये मुकाम हासिल किया
एक और दिव्यांग योगेश कठुनिया जी ने उन्होंने बर्लिन में पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर वर्ल्ड रेकॉर्ड बनाया है उनके साथ सुंदर सिंह गुर्जर ने भी जावेलिन में गोल्ड मेडल जीता है
मैं एकता भयान जी योगेश कठुनिया जी और सुंदर सिंह जी आप सभी के हौसले और ज़ज्बे को सलाम करता हूँ बधाई देता हूँ
आप और आगे बढ़ें खेलते रहें खिलते रहें
मेरे प्यारे देशवासियो अगस्त महीना इतिहास की अनेक घटनाएँ उत्सवों की भरमार से भरा रहता है लेकिन मौसम के कारण कभीकभी बीमारी भी घर में प्रवेश कर जाती है
मैं आप सब को उत्तम स्वास्थ्य के लिए देशभक्ति की प्रेरणा जगाने वाले इस अगस्त महीने के लिए और सदियों से चले आ रहे अनेकअनेक उत्सवों के लिए बहुतबहुत शुभकामनाएँ देता हूँ
फिर एक बार मन की बात के लिए ज़रूर मिलेंगे
बहुतबहुत धन्यवाद